और इधर पीछे घर वगेरा भी हैऔर इधर देख सकते गाछ-उछ भी है और यहदोनों सिटी रिक्शा एक ही तरह लग रहा है और एक में सिर्फ पीला कलर किया गया है नीचे से।

और उधर भी दो-तीन आदमी है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत है और इधर कुछ झंडा-वंडा भी है।

तो देख सकते है ये सगुन का है और ये सिटी रिक्सा है और ये इधर कुछ आदमी वाद्मी भी है और सिटी बहुत ही अच्छा और ये बेटरी से चलती है।